तो जैसा की दोस्तों आप इस तस्वीर में देख पा रहे हो इस तस्वीर में आपको ये एक तस्वीर तो नजर ही आ रही होगी यह तस्वीर में आपको पर --

एज्युकेशन नाम का ये बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा होगा यानि की यहापे कंप्यूटर सिखाये जाते है कंप्यूटर कोर्स होते है।

इस तस्वीर में आप को ये खुली सी जगह पर एक खुला सा गार्डन नजर आ रहा होगा गार्डन में आप देख पा रहे होगे तो एक पिगी बैंक बना हुआ है।

जहाँ पर की ब्रिज की बात की जाती यहाँ से वाहन अक्सर आते जाते रहते है।

तो वो भी काफी तेज रफ़्तार मै हो रही है।